किसी भगवान की पूजा चल रही है।

बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और कुछ औरतें इन कुर्सियों पर बैठी हैं।

जिसपर कुछ हरे भरे पेड़ है।

यह तस्वीर एक रोड की तस्वीर नजर आ रही है।

कुछ बच्चे परफॉर्मेंस दे के बैठे और खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और एक औरत यहां पर झाड़ू लेकर आई हुई दिखा रही है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है।

एक छोटे से हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है।

आर्य अस हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी होम लिखा हुआ है यह तस्वीर--

और इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ पौधे घास--

कुछ कुर्सियां और टेबल रखा हुआ नजर आ रहा है।